जिनका नाम है श्री शारदा स्टोर --

यहाँ पे बहुत सारे कोचिंग का पोस्टर लगा हुआ है ।

दोनो-दोनो साइड मे एवं बीच मे रास्ता भी है और नारियल पेड़ के नीचे में लाल एवं सफेद कलर का --

बहुत ही अच्छा देखने में लग रहा है।